किया जा रहा है काफी लोग भीड़ जमा कर खड़े हुए हैं और कुछ लोग अपने-अपने काम में बहुत ही ज्यादा मगन लग रहे है काफी पेड़ भी दिखाई दे रही है।